इस तस्वीर में रोड दिखाई दे रहा है।

और तराजू बटखरा है एक मर्दाना खड़ा है दो चाची झुकी हुई हैं।

और एक आदमी खड़ा है।

इस तस्वीर में एक पुल दिखाई दे रहा है।

पानी भी है हरा-भरा पत्ता है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

एक लड़की का पैंट ब्लू है दूसरा का काला है।

और एक लड़का बैठा हुआ है।

और एक गुलाबी कलर का चित्र है।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

लड़की बैठे हुए हैं।

लड़का लड़की को टैटू बना रहा है।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

गिट्टी गिरा हुआ है बालू गिरा हुआ है।

और एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ है।

ब्लू कलर का चदर ओढ़ा हुआ है।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

पर एक औरत खड़ी है.

रोड पर कार्पेटर बिछा हुआ है।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

एक पैर दिखाई दे रहा है एक--

एक मैजिक दिखाई दे रहा है।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

एक रोड दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ बौधे दिखाई दे रहे हैं।

दो आदमी बर्तन धो रहे हैं।

बर्तन दिखाई दे रहा है।

जिसमें कई तरह के बर्तन हैं।

तीन आ-- आदमी हैं।

एक लाल कलर का पोस्टर टंगा हुआ है।

कई आदमी लोग बैठे हुए हैं।

एक स्टेज है वाइट कलर का।

एक गुलाबी कलर खिलौना है।

कई आदमी लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं।

हरे-भरे पैर पौधे दिखाई दे रहे हैं।

रोड पर एक बाइक खड़ी है।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

और एक रोड गया हुआ है।

चार आदमी काला कलर का पहने हुए हैं।

कमरा दिखाई दे रहा है।

सड़क दिखाई दे रहा है।

पार्क दिखाई दे रहा है।

कुछ झूले लगे हुए हैं।

पार्क दिखाई दे रहा है।

एक पंखे और घड़ी है।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

दीवालों पर पंखे भी टंगे हुए हैं।

दीवालों पर फ्रेम लगे हुए हैं।

गाय पानी में खड़े हैं।

जिसके चारों तरफ हरे भरे--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

जिसके अंदर कुछ किताबें पड़ी हुई हैं।

एक थर्मस का बोतल है।

जिसके अंदर कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं।

दीवाल पर शंकर भगवान का फोटो दिखाई दे रहा है।

वाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

और आदमी बैठे हुए हैं।

और करकेट दिखाई दे रहा है।

होल दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ फूल का जयमाला है।

काला कलर का पेंट किया हुआ है।

घर दिखाई दे रहा है।

जिसमें शेर और --

जिसका बाहर एक--

का पोस्टर --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

और एच_पी का पोस्टर टंगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक नदी--

जिसके बगल एक पुल बन रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर बोरा में कुछ सामान है।

दुकान के बाहर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

करकट का मकान है।

कई तरह के सोफा सेट हैं।

कुर्सी हैं टेबुल हैं।

कुर्सी दिखाई दे रहा है जो लाल कलर है।

कुछ मकानें दिखाई दे रही हैं।

एक गाय बैठा है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है।

रोड पर गाड़ी चल रहे हैं और आदमी भी चल रहे हैं।

एक लाल कलर का मोना घर है।

इस तस्वीर में एक डोर दिखाई दे रहे हैं।

वाइट कलर की लाइट पड़ रही हैं।

आदमी लोग घूम रहे हैं।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

मस्जिद दिखाई दे रहे हैं।

कई आदमी लोग बैठे हुए हैं।

चारों तरफ पंडाल से घेरा हुआ है एक--

मंदिर दिखाई दे रही हैं।

कई तरह के लाइट पड़ रहे हैं।

कई तरह के फ्रेम हैं दीवाल पर।

लाइट दिखाई दे रहे हैं।

कई आदमी लोग खा रहा है।

साउंड बॉक्स दिखाई दे रहा है।

लड़कियां लोग नाच रही हैं।

इस तस्वीर में एक --

इस तस्वीर में एक रो दिखाई दे रहे हैं।

और हरे-भरे घास-फूस --

दीवालों पर फ्रेम टंगे हुए हैं।

डायनासोर दिखाई दे रहा है।

डायनासोर का एक बच्चा भी साथ में है।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

एक आदमी गाड़ी को धो रहा है।

वो भी लाल कलर के हैं एक डस्टबिन है।